यह एरिया एक ओपन स्पेस में है और इस फोटो में एक प्लेग्राउंड या पार्क एरिया दिख रहा है।

फोटो को देखके लग रहा है कि ये एक फंक्शन ग्राउंड है जहां--

एक लड़की घूम के है।

और येलो कलर का चेयर है।

इस फोटो को देख के लग रहा है की ये एक क्विक शॉपी एक्सप्रेस बोर्ड है और--

और एंट्रेंस का साइड मे नो पार्किंग जॉन लगती है और--

इस इमेज में एक लांग वुडन टेबल है जिसके चारों तरफ--

साइड में हिंदुस्तान लिखा है।

साइड में और पीछे में दीवार में कैंची वाला डिजाइन ड्राइंग करके है और --

कोरियन फ्राइड चिकन कोरियन हॉट डॉग कीमची फ्राइड राइस लापिंग ये बाहर में है बोर्ड बना के है।

साइड में टेबल के नीचे वाला तख्ता--

व्हाइट कलर का कुर्सी दिखाई दे रहा है और दीवार में वाटर बोतल भी दिखाई दे रहा है और--

साइड में कोकोनट पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

जो नीचे नीचे में घूम के है और--

एरिया में यहां पहाड़ है पहाड़ के नीचे में--

बाहर में डस्टबिन रखे हैं रास्ता साइड में।

बाहर में एक नाहरलागुन पुलिस स्टेशन और बाहर में एक बोर्ड है।

के आस पास घेरे हैं।

ई फोटो एक जिम का है और नीचे में दस के_जी डंबल बेल्ट भी दिखाई दे रहा है और--

दो वाइट कलर वाला आगे है और बाहर में--

फोटो एक मेला दिखा रहा है।

को देख के लग रहा है की ये एक डांस क्लास रूम है और पीछे साइड में--